और पंडित जवाहर लाल नेहरू का पिक्चर है।

बहुत सारी बेंचे भी हैं ।

रेड कलर की है।

और उसमें दुल्हन के घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। दूल्हे को गाड़ी को सब ने चारों तरफ से घेर रखा है बहुत सारे लोगों ने।

आर सबसे महत्वपूर्ण प्रर्बो में से एक --